एक लड़का ब्रांड टी शर्ट पहन के खड़ा है।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

बड़े बड़े प्लांट्स भी नजर आ रहे हैं एक ट्री नजर आ रही है।

पीछे लिखा है कृषि संग्रहालय एग्रीकल्चरल म्यूजियम जो कि पिंक और ऑरेंज कलर में लिखा है और ये बिल्डिंग ग्रे कलर में --

एक बिल्डिंग को देख रही हु क्रीम कलर का उसमें रेड रेड कलर का लाइन लाइन बना --

में और यहां पे जो बैठने का बना है नम्बर --

दोनों बच्चियों ब्राउन ब्राउन कलर के पहने--

वहां पे थाली सत्तर रुपए रखा हुआ है राधे राधे भोजन बड्ढे कीजिए ऐसा कुछ लिखा है।

और ब्लू कलर का लाइट्स जल रहा है--

पेट्रोल पंप का एरिया है दो लोग बाइक्स पे खड़े--

में हमार छत्तीसगढ़ लिखा है बिच में कुछ है।

कांच का गेट बना हुआ है ब्राउन कलर का दरवाजा--

और एक पार्क नजर आ रहा है और एक क्रीम कलर का बड़ा सा ब्लॉक जैसे बना--

का चेहरा छुपा हुआ है ब्लैक कलर का पहना--

सामने ब्लैक कलर का है जमीन--

इसमें इमेज बना हुआ है वॉल पे व्हाइट कलर का कुछ है।

मैं दोनों को देख रही हूं। इस इमेज में एक भाई ने--

ब्लू कलर की जीन्स पहनी है दूसरे ने ब्लैक कलर की शर्ट --